अंदर की तरफ लोगों जाते हुए नज़र आ रहें हैं एक आदमी जिसने सफ़ेद रंग की शर्ट पहनी हुई है उसके हाथ में सामान लगा है।

यह एक अअ वाटर पार्क का दृश्य है जिसमे चारो तरफ बाउंड्री लगी हुई है नेट लगी हुई है उसपे छोटा-छोटा पिलर लगे हुए हैं।

नीचे एक बस दिखाई दे रही है जहाँ हरी-हरी दिखाई दे रही है चारो तरफ स्लाइड्स दिखाई दे रही है बड़े आकृति के--

यह एक पार्क का दृश्य है जिसमें नीचे का फर्स दिखाई दे रहा है जहां पर मिट्टी फैली हुई है हरी-हरी घास नीचे है चरों तरफ लगी हुई है पेड़ दिखाई दे रहे है पेड़ो की --

यहाँ चारो तरफ ये शिलायें दिखाई दे रहीं हैं इनपे झंडे लगे हुए हैं ये तिरंगा झंडा है जहाँ तक पहाड़ियां दिखाई दे रही हैं बड़े-बड़े पिलर दिखाई दे रहे हैं।

यह एक ग्राउंड का दृश्य है जिसमें कुछ लोग खड़े हुए हैं बीच में एक आदमी है जिसने नीले रंग की शर्ट पेहने हुए मुँह पे सफेद रंग का मास्क लगाया हुआ है उनके हाथ में --

टेबल रखा हुआ है टेबल पर एक कंप्यूटर रखा हुआ है दूसरे टेबल पर कुछ फाइल है और उसके ऊपर पानी के बोतल रखा हुआ है उसके आस-पास लोग बैठे हुए हैं कुछ लोग खड़े हुए हैं।